इस तस्वीर में एक लड़का दिख रहा है जो कि घर के मंदिर के बाहर है और यह गेट बंद है।

गेट बंद है मंदिर का और फैन भी लगा हुआ है देखने मे --

ये बैठने के लिए भी अच्छी व्यवस्था है आस पास काफ़ी सारी कार और गाड़ियां--

इस तस्वीर में कुछ लोग एक बड़े से पत्थर को गाड़ी से लेके जा रहे --

दीवारों पर तस्वीरें लगी हुई है।

इस तस्वीर में एक नाई की शॉप को दिखाया है जो अभी अभी खुली है यह तो हो रखी है।

इस न जॉब के बाहर कुर्सियां रखी हुई है जिन पर दो लोग बैठे हुए है।

छत पर रखी हुई कुछ टंकियां दिख रही हैं आसपास बहुत सारे घर बने हुए हैं सूरज दिख रहा है।

जिसके सिंह उगे हुए हैं पास ही में बहोत बड़े बड़े पेड़ और एक घर झोपड़ी दिख रही है यह काफी सुंदर है।

इस तस्वीर में एक लाइब्रेरी को दिखाया है ये लाइब्रेरी अभी खाली है बैठने के लिए चेयर --

इस तस्वीर में बहोत सारी सब्जी दिख रही है जिनमें कुछ धनिया है पुदीना --